ऑफिस है यह ऑफिस में बहुत सारे लड़के-लड़की यहाँ पर अपने-अपने मोबाइलो में काम कर रहे है यहाँ पर बहुत सारी कुर्सियां भी लगी है यहाँ पर बहुत ही सुन्दर जगह भी है यहाँ पर भगवान जी की मूरत भी है।